पत्थर का सामान दिखाई दे रहा है कुछ लकड़ी का फर्नीचर भी है शायद.--

यहां सफेद दिवाले बहोत दिखाई दे रहे--

ऊपर स्ट्रेट स्ट्रीट लाइट लगी हुई है नीले कलर का बोर्ड दिखाई दे रहा है पीछे कुछ लोग--

यह एक कार गराज है यहां पे कुछ मैकेनिक कार सुधार रहे है व नीले कलर की पेटी रखी हुई है।

यहां शायद ये कॉलेज हो सकता हैं व स्कूल भी हो सकता है।

वहं यहां एक होल्डर है जहां हम बल्ब फिट कर सकते हैं व गेट की फिनिशिंग बहोत शानदार है।

यहाँ एक नीले कलर का घर बन रहा है यह मकबरा भी हो सकता है।

यहाँ पे हमें एक घर बनता हुआ दिखाई दे रहा है।

और कुछ लोग सामान लेन देन कर रहे हैं।

यह सफेद कलर का एक ताबूत बना हुआ है यहाँ पुजारी पूजा कर रहे हैं।

किप्स पंचक्रम है यहाँ चिकित्सा केंद्र है।